पेड़ पौधे लगे हुए है इन कच्चे घरो मे लकड़ी के गेट लगे हुए है उपर से कपड़े बिछाए हुए है ओर काफ़ी सारे पेड़ पौधे लाइटे भी दिख रही है।

और रंग बीरंगे फूलो की माला भी लगायी गयी है एक मूर्ति खड़ी हुई है जो हाथ जोड़े स्वागत करती नजर आ रही है काफी लोग भी यहाँ पर मौजूद है ।

यहाँ पर एक घर बना हुआ जिसमे लोहे की बाल्कनी लगी हुई है सामने काफी सारी जगह पड़ी हुई है जिसमे छोटी-छोटी दुह लगी हुई है सामने--